हमे बच्चे नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे है एक भारत माता बनी हुई दिखाई दे रही जो झंडे को लहराते हुए दिखाई दे रही--

हमे नदी दिखाई दे रही है एक पुरुष खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिस एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है जो पुरुष का हाथ पड़े हुए खड़ा हुआ है ।

हमे एक पुरुष सेल्फ़ी लेते हुए दिखाई दे रहा है जिसने काले रंग कि शर्ट पहनी हुई है तिलक लगा रखा है पीछे कई सारे पत्थरों कि चट्टानें दिखाई दे रही है।